कुछ गोल गोल पौधे हैं कुछ खड़े खड़े पौधे हैं और साइड में कुछ गमलों में उर भी हरे भरे पौधे हैं।

जो कि नर्सरी ब्लू कलर के जाल से घीरा हुआ है साइड में एक मोटा बांस भी है।

है जो की बहोत सारी लोहे के धातु है कुछ सफेद कलर के लोहे हैं कुछ काली कलर के लोहे हैं।

क्योंकि मैरिज हॉल में बहुत सारी लाइटिंग लगी है।

कुछ बहोत सारे बैलूने लगी है कुछ लाल कलर की बलून है कुछ सफेद कलर के बलून है।

बहुत बड़ा द्वारा भी है।

बीचों बीच बहुत से गहरा पा--

यह कोई बाइक का बहोत बड़ा शोरूम है।

जोकि कुछ सोफे पर दो आदमी बैठे हैं उसके आगे एक टेबल है टेबल पर एक हेलमेट है एक पानी का बोतल कुछ किताबें हैं।

यह कोई बहोत बड़ा पार्क का दृश्य है।

उसके पीछे एक ब्लू कलर की बाइक भी है।

और साइड में बहुत सारी लाल कलर की कुर्सी लगाई जिसमें एक आदमी बे--

बहुत सारी कुर्सियां भी लगी है बहुत सारे कपड़े भी लगे पीछे लाल कलर की लाइटे लगी जो की स्टेज पर है।

साइड में बहुत सारे खिड़कियां--

उसकी साइकिल के ऊपर कुछ बोर्ड में लिखा है जिसमें लिखा है हिंदुस्तान साइकिल और--

और ये कोई तंबू का दृश्य है जो की तंबू में बहुत सारी कपड़े हैं।

और एक टेबल लगा हुआ है टेबल के सामने यह कोई महिला कुर्सी पर बैठी।

वह जार नीले कलर के पीछे ऊपर एक लाइट भी--

बाजार में बहुत सारी दुकाने हैं जो कि कुछ राशन की दुकान है।

एक बहुत बड़ा पार्क का दृश्य जो की पार्क में कुछ बहुत सारे छोटे छोटे घास--

कुर्सी पे एक बहोत अनोखी चीज की जिसमें बहुत सारे कांटा चम्मच है एक सैनिटाइजर का बॉक्स भी है दीवार पर बहोत सारी प्रिंट है कुछ--

एक आदमी भी है जो कि उसने पीले कलर का कपड़े पहना है लाल कलर का--

ये आदमी ने हरे कलर का जैकेट पहना है कुछ काले कलर का शर्ट पहना है।

यह कोई स्टेशन का चित्र है।

जिसमें बहुत सारे आदमी हैं एक आर_पी_एफ भी।

यह उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जोकि सिल्वर स्पून लिखा हुआ है।

एक बहुत बड़ा साड़ी का शोरूम है जो कि।

कि स बहुत सारी साड़ी साड़ी रखें हैं पीछे दो तीन चार लहंगे भी रखे हैं।

अरे कुछ केविन भी है जो की लकड़ी का बना हुआ है।

जो कि कुछ बहुत अनोखी तरह की मूर्तियां मूर्तियां है।

की बीचों बीच कुछ लगा हुआ--

ये बीचों बीच के साइड में कुछ बहुत सारे फूल हैं कुछ लाल कलर के फूल--

बहुत सारे ग्राउंड के बाहर भी आदमी है ग्राउंड के अंदर भी हैं।

बिल्डिंग में एक बालकनी के ऊपर एक दुकान है नीचे भी कुछ दुकानें हैं एक ए_टी_एम भी है।

जो कि बहुत बड़ा घर का दृश्य है जोकि घर में कुछ सिल्वर पैनल की कांच की खिड़कियां बनती है।

कुछ पेड़ छोटे छोटे हैं और साइड में एक बहुत बड़ा घर है और साइड में बहुत बड़ी बड़ी पेड़ हैं।

कुछ फूलों के पौधे हैं कुछ पेड़ है जो की फूल सफेद कलर के हैं।

यह कोई माल का दृश्य है जो की मॉल में बहुत सारे सामान रखे हैं।

और उसके पीछे पैकेट में आटा भी रखे--

कुछ आदमी ढोल बजा रहे हैं उसी आदमी के सर पर बहुत सारे कुछ घुंघरू जैसे हैं।

यह कोई किसी घर में बहुत बड़े शादी का मंडप का दृश्य है।

जो कि मंडप में चारों चार खंबे है उसके ऊपर बहुत सारी फूल लगे हैं।

नीचे तीन चार कुर्सी रखे हैं साइड में एक गद्दा भी रखा है गद्दे के ऊपर एक तकि--

बहुत सारी साइकिल--

यह रोड के किनारे बसा हुआ कोई पेट्रोल पंप का दृश्य--

ये पेट्रोल पंप में बहुत बड़ा ट्रक है जिसमें बहुत सारे पेट्रोल है।